यह दुकान बहुत बड़ा है यह दुकान मे सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक समान है।

यह मूर्ति है। एक कारीगर बना के रखे हुए है।

का समान रखे हुए हैं एक औरत रोड क्रॉस कर रही है।

और बाल भी काटने आते है यह सैलून बहुत बड़ा है।

ये बहुत अच्छा जगह है यहाँ बहुत सारे चार पहिया वाहन है।

यहाँ कोई फंक्शन रखा गया है। इस फंक्शन मे बहुत--

यह जगह बहुत ही सुंदर है | यहाँ बहुत सारा पानी रहता है।

यहाँ बहुत सारे काम होते है। लोगों को स्वास्थ्य से लेके बहुत सुविधाएं मिलती है।